पहले ट्रिप वापी मुंबई पुणे नासिक शिरडी लिखा है।

अ ब्लैक कलर की हैं और कुछ डंडे को बांध के और एक घर का काम कर रहें वो लोग घर बन रहा --

इस चित्र मे मुझे श्री उद्धवराम रेसिडेंस दिख रहा है।

और ब्लू कलर का आसमान दिख रहा है बीच में कुछ मुझे ग्राउंड भी दिख रहा है।

बैक टेबल दिख रहा है जिस पे तीन बुक रखी हुई है।

जहां पे व्हाइट कलर की अ चेयर रखी हुई है।

रेड कलर का कारपेट बना हुआ है लगा हुआ है वहां पर और रेड सीढ़ियां है।

बाहर भी कुछ सीढ़ियां आ कुर्सियां रखी गईं हैं कुछ प्लॉट के अंदर रखीं गईं है।

इस चित्र में मुझे एक ग्री ग्रीन पेड़ बहोत सारे ग्रीन पेड़ दिख रहे --

ग्रे एंड पिंक कलर के अह ब्लॉक दिख रहे हैं।

और एक टेबल पे मुझे कुछ बुक्स दिख रहे हैं येलो कलर के और एक बॉटल दिख रहें हैं और कुछ डब्बे रखे हुए दिख रहे हैं।

व्हाइट कलर का टी-शर्ट एंड ग्रे कलर का ट्रैक पहना है एक दीवाल दिख रही है।

इसके पीछे भी एक आदमी आ रहा है एक येलो कलर की टी शर्ट पहना है।

कुछ बेंच रखे हैं और बच्चों के खेलने का लगा झूला लगा हुआ है।

और पीछे कि दीवाल पे भी ब्लॅक कलर का बोर्ड हैं उसपे भी लिखा हुआ दिख रहा हैं।

और एक गाड़ी दिख रही है दो स्कूटी दिख रही है।

और उसके पीछे एक लाइट का खंभा दिख रहा है और एक ब्लू कलर का दरवाजा दिख रहा है।

चित्र में मुझे बादल दिख रहे हैं ग्रीनरी बहुत सारी दिख रही हैं।

का वायर लगा हुआ है और टेबल का ड्रा दिख--

बगल में टेबल के बगल में एक और टेबल रखा है उसके ऊपर साईं बाबा का एक फोटो लगा है।

चित्र में मुझे एक घर दिख रहा है और वहां पे दो गाड़ियां दिख रही हैं।

एक गाड़ी जाती हुई दिख रही है एक औरत पिंक कलर की साड़ी में आ रही है उसने फेस को बांध के रखा है।

और ये भगवान जी दिख रहे हैं कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

इस चित्र में मुझे कैमरा दिख रहे हैं। सोफा दिख रहे हैं।

और एक पहाड़ दिख रहा है बोहोत सारी ग्रीनरी दिख रही है।

और उसके बाहर एक गाड़ी खड़ी है बगल में एक पेड़ है।

और नीचे मुझे मिट्टी दिख रही हैं बहोत सारे घास दिख रहे हैं।

उसका गेट भी दिख रहा जो ग्रे कलर का है उसकी दिवाले व्हाइट कलर की है।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

चट्टाने दिख रही हैं उस पे बहुत सारे प्लांट्स दिख रहे हैं पेड़ पौधे सूखे हुए भी हैं और बहुत सारे ग्रीन हैं।

आसमान दिख रहा है और मुझे बहोत सारे लाइट के वायर भीं दिख रहें हैं।

इस चित्र में मुझे एक होटल दिख रहा है वहां पे पेप्सी लिखा हुआ दिख रहा है नो स्मोकिंग लिखा है।

येलो कलर के स्लाइडर दिख रहे विड्रोल आइसक्रीम वाला दिख रहे --

एक ट्रक एक ट्रक जाती हुए दिख रही है।

जो ग्रीन कलर का आ व घासे लगा हुआ है।

और उसकी साइड की रेलिंग दिख रही है जो ब्लैक कलर से है।

आसमान में बादल दिख रहे हैं और कुछ प्लांट्स दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे पेड़ दिख रहा है कुछ कटी हुई लकड़ियां दिख रही--

उसके पीछे पिंक कलर के ब्लैंकेट रखे हुए हैं।

दो बाइक हैं एक एक स्कूटी है।

और एच_पी लिखा दिख रहा है उसके अन बगल में शॉप दिख रही है।